और नीचे भी बहुत सारी रफ्ती वाली बुक्स रखी हुई हैं।

बहुत सुंदर तरीके से उसे डेकोरेट कर रखा हैं मंदिर को लाइटों से --

तोप वगैरा यह सारी चीजें मिलती है आयल मिलता है फेस वॉश मिलता है --

कुछ स्ट्रैट और स्ट्रैट जाते-जाते सामने एक पहाड़ नजर आ रहा हैं पहाड़--

पहाड़ जो हैं वो पूरा हरे रंग का नजर आ रहा हैं उसमें बहुत सारे --

पीछे बहोत सारी घास नजर आ रही है पानी में जो घास आती वो वाली।

कुएं के आस पास बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं पीछे आसमान है नीले रंग का--

जैसे की मैं देख पा रही हूँ मेरे सामने कुछ पैकेट्स लगे हुए हैं सामने कपडे के --

और उसके पीछे एक बैनर सा लगा हुआ हैं थंब रुम्ब श्रीलंका --

जैसे वो जंगली घास ही हो डार्क ग्रीन कलर का है।

और उस तबेले में दो गाय नजर आ रही हैं एक छोटा बछड़ा हैं दो--

दूर से दो जने कोई चेयर पर बैठे हुए हैं।

ऊपर आसमान है नीले रंग का हल्का नीले रंग का सफेद कलर के थोड़े-थोड़े बदले नजर आ रहे हैं।